ये एक कपड़े का शॉप है जहाँ की बहुत तरीके के लाल पीले अ ब्लैक कलर के कपड़े रखे हुए हैं।

ये एक महात्मा बुद्ध की उम्म तस्वीर है मूर्ति है जिसमें की महात्मा बुद्ध बेठे हुए हैं ब्लैक कलर के कपड़े में।

ये एक शनि भगवान का मूर्ति है जो की वाइट कपड़े से ढके हुए हैं।